इस हाईवे रोड के अंदर बहुत सारे लोहे की पाइपे लगी हुई है।

यह एक नदी का दृश्य है नदी के बीचों बीच एक पुल भी है।

नदी के किनारे छोटे छोटे घास और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

अंडरग्राउंड सर्कल वाले लाइट भी बहोत सारे लगे हुए हैं।

बहोत सारे गेट बने हुए हैं फूलों और कपड़ों की मदद से।

ग्राउंड में बहोत सारे चेयर टेबल रखे हुए हैं।

वहां पे टेंट हाउस भी लगा हुआ है।

लाइटें भी लगी हुई है।

उसकी दीवार पर सबसे ऊपर क्रॉस का साइन भी है।

नदी के पानी में कुछ कचड़ा भी बह रहा है।

इसके चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है बाउंड्री लोहे का पाइप का है वो तिरंगे कलर का है।

यह एक दुकान का दृश्य है इस दुकान के शटर का कलर येलो है।

राइट साइड में सो प्लांट भी लगे हुए हैं।

इस ग्राउंड में चार लड़कियां खड़ी है।

यह एक शादी के स्टेज का दृश्य है।

एक नाव पर बहोत सारे महिला बच्चे पुरुष बैठे हुए है।

यह एक कमरे का दृश्य है इसकी दीवार व्हाइट पुट्टी से किया गया है।

अंदर में आलमारी में बहोत सारे बुक रखे हुए हैं।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है ग्राउंड के चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है।

यह एक नदी का दृश्य है नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।